ये जो आपको कोई झील नजर आ रही है जोकि एक मंदिर के किनारे है। जिसमें पानी में आपको बहोत से लोग नजर आ रहे होंगे जोकि --

प्रेयर कर रहे हैं। हाथ जोड़ा हुआ है। बहोत तादाद में लोग आए हुए हैं।

बहोत सारे पेड़ हैं और पीछे आपको पेड़ भी नजर आ रहे होंगे। ये बहोत सारे पौधे है जोकि --

ये आपको नजर आ रही होगी मूर्ति गुफा के अंदर ये महात्मा बुद्ध की पत्थर से तरासी हुई मूर्ति है।

टेबल पर रखा गया है और कुछ लोग हैं जो इसके चारो तरफ खड़े है और टेम्पूयें खड़ी है बहोत सारी।

ये एक नदी तस्वीर है और उस नदी के ऊपर से एक ब्रिज जो है ब्रिज बना हुआ है।

ये रात के समय की फोटो है जिसमें आपको एक चाऊमीन का ठेला नजर आ रहा होगा।

कुछ है जो उनकी स्टेयर पर बैठ कर वेट कर रहे हैं और धूप बहोत तेज़ है।

एक बच्चा हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ है। छत पे कपड़े सूख रहे हैं।

ये और चर्च का जो आपको दिख रहा होगा। वो उसका साइन है जो प्लस का साइन होता है।

प्रेयर करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे ।

ये फोटो में आपको एक गवर्मेंट बस नजर आ रही होगी जोकि येलो कलर की है।

बच्चे के साथ पानी के ऊपर खड़ा है और एक तरफ दीवार है और दीवार पे --

बाहर कुछ लगी हुई हैं और एक तरफ कुछ खम्भे और ।

ये बोहोत ही पुराना बैंक नजर आ रहा है। बैंक का नाम यूको बैंक है।

जोकि इसकी ब्रांच है और इसके बाहर एक मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़े हुए हैं और एक साइकिल पर एक आदमी --

और जिसमे से लोग आ रहे हैं और अंदर की तरफ़ पीछे एक बड़ा मंदिर और नज़र आ रहा है।

जो है वो की चेयर लगाई हुई है और चेयर ओ की बीच में जो है वो सेविंग सलून का सामान है हर प्रकार का सेविंग कटिंग --

और आपको इसमें चर्च का सिंबल जिसे क्रूस कहा जाता है वो नज़र आ रहा होगा।

और नीचे एक मार्ट दुकान है जिसमे आल टाइप ग्रॉसरी है।

और कुछ बच्चों के खेलने के लिए --